इसमें बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं एक आदमी सामने बैठा है जिसने नीले रंग की--

उसके पीछे एक और मशीन लगी हुई है।

और खुले मैदान में बहुत सारे बच्चे खेलने आ रहे हैं।

जो इस शोरूम की शोभा को बढ़ावा--

दान में पानी देने का काम कर रहा है।

ला उसमें पानी डाल रही है।

सामने बहुत सारी मशीने लगी हुई है।

जो सफेद पीले और नीले रंग की दिख रह--

सामने कुछ लाइटें जल रही हैं पीछे एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है।

और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर लग र--

दीवार पर पीले और काले रंग का पेंट किया गया है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो सफेद और पीले अक्षर--

और चारों तरफ हरे रंग की मैट से बाउंड्री की गई है।

इस फोटो में एक दीवार दिखाई दे रही है।

एक आदमी दिख रहा है जिसने अपने हाथ में काले रंग की पोलिथीन ले रखी है।

और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।